और बहोत बड़ा पंखा बना हुआ है।

सेल्फी के लिए पोज दे रहे हैं।

देख सकते है कि यहां पर--

देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा--